अ जैसा कि हम देख पा रहे है ये बाइक का शोरूम है। यहाँ पर चार बाइकें खड़ी हुई हैं और जोकि ब्लू कलर की है रेड कलर की हैं और ब्लेक कलर की है। शायद सामने जो खड़ी है वो भी ब्लेक कलर की है।

आ जेसे की हम देख रहे है यह एक रूम है जहाँ पर सामने एक बेड अ बेड है | सामने दो चेयर है | रेड कलर की एक ए.सी. है और चारो तरफ क्रीम कलर की वॉल है ।

आ जैसा की हम देख रहें है यह एक दो मंजिल का मकान है --

आ जैसा की हम देख रहें है यहा सामने संरइज़ हो रहा है और संराइज़ होता है तो काफी अच्छा लगता है | अ आधा खास पीला होता है तो आधा नीला होता है ।